बाते कर रहे है ये बिल्डिंग बहोत ही सुंदर है।

लोग यहां घूमने फिरने फोटो खींचने आते हैं।

यह बहुत सुंदर सा मंदिर है यह बहुत चमक रहा हैं।

यहां पर लोग बोट राइटिंग कर रहे हैं।

पर एक छोटा सा तालाब है जो कि चट्टानों के बीच में बना हुआ है।

टेस्ट राइडीग भी कर सकते हैं अपना लाइसेंस दिखाकर यह बाइक की कलर्स भी बहोत अच्छे है।

यहां एक छोटा से जनरल स्टोर है जहां पर टुथब्रश बिस्किट नमकीन--

कुछ लोग दिख रहे हैं खाने का सामान रखा हुआ है डाइनिंग टेबल जैसी लगी हुई है।

और गायक भी है साथ में यह शहनाई वगैरह बजा कर--

यहां पर अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है तिलक लगा कर।

और पियानो भी बजा रहे हैं यहां पर--